यह फोटो अनिल ऑटो पार्ट्स शॉप की है।

नया बना हो इसकी ओपनिंग के लिए इसे सजाया गया है।

एवं इसमें इ.वी. स्टार मार्केट का बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत सी देवियाँ एवं गणेश जी --

यह फोटो एक सब्जी बाजार की है जहां पर कुछ दुकाने लगी हुई है इनमे फल फ्रूट सब्जियां --

चावल ककड़ी प्याज़ मिर्चिया रखी हुई हैं एवं इसमें दो चम्मच डली हुई हैं इनसे --

इस फोटो में हमें एक बिल्डिंग का छत डलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे --

कुछ व्यक्ति छत डाल रहे हैं । उसपे माल डाल रहे हैंएवं कुछ व्यक्ति ऐसे ही खड़े हुए देख रहे हैं ।

यह फोटो एक उम बिल चर्च की है जो उम गेरुए कलर का एवं वाईट कलर का है।

यह फोटो एक केक शॉप की है । जिसमे कुछ लाइटिंग लगी हुई है एवं इसमें एक कांच का गेट लगा हुआ हैं ।

मतलब प्रदर्शन कर रहे है यहाँ पर एक लड़की भारत माता बनी हुई है जो झंडा फहरा रही हैं।

उम्म सुबह-सुबह व्यक्ति महिलाएं योगा करने आते हैं यहां पर कुछ बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं।